इ इस आदमी का पैर का हड्डी टूटा हुआ है जिसका थेरेपी चल रहा है ये लेटा हुआ है बेड पे और उधर से डॉक्टर --

ऊपर तीन-तीन छह तीन तीन बारह ये फोटो लगे हुए हैं।

एक पिकअप खड़ी हुई है उधर हरे कलर का एक बिल्डिंग दिख रहा है यहां पेड़-पौधे दिख रहे है।

यह रेमंड की शॉप है जिसपे लिखा हुआ है दी रेमंड शॉप हिंदी में भी लिखा गया है।